बेल्टकॉन स्कूल जो लिखा हुआ है और बाहर सरस्वती जी की बहोत बड़ी यहां पे फोटो बैनर लगाई गई है।

और सा का आउर एक ट्रक रोड में खड़ा हुआ है ऊपर इसमें काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है पीछे एक फोर व्हीलर खड़ी हुई है।

और यहां रोड में रात में लाइट भी जल रही है।

ऊपर काफी गुब्बारे भी लगे हुए हैं सामने दरवाजा खिड़की दिख रहा है ऊपर फैन भी लगा हुआ है।

इसमें सा बगल में यहां पे एक बैनर बोर्ड भी लगा हुआ है टच फॉर्म के--

यहां पे दो आदमी पानी में खड़े हुए हैं और एक आदमी नाव में खड़ा हुआ है नाव चला रहा--

और पीछे साइड यहां पे पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है।

पीछे साइड रास्ता भी दिख रहा है लगता है और--

यह एक दुकान है जिसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है अंदर एक आदमी अंदर से सामान--

और स्कूल काफी बड़ा बना हुआ है यहां पे--

और बाकी पानी ही दिख रहा है। बे नदी लग रही है।

पेचकस पाने और भी काफी सामान यहां पर रखा हुआ है।

जो लोग यहां पे सोंग्स बजाते हैं और सीखते हैं ऊपर लाइटिंग वगैरह भी की गई है।

यहां पे काफी सारे फ फोर व्हीलर रास्ते से--

डांस वाली लड़कियाँ हैं जो संगीत डांस में--

ये अपने स्किन केयर के हैं ऐसे लग रहा है स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट यहां पे यूज है।

और सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है यहां पे।

यह एक पैलेस जैसा लग रहा है यहां पे--

डिब्बे में यहाँ पे सारे डिब्बों के बाहर जो चित्र बना हुआ है उस हिसाब से बता रही हूं।

जो सिविल इंजीनियर बोला जा रहा है वो अपने कैमरे से--

और भी काफी सारे समान हैं जो ऊपर रखे हुए हैं।